फोटो में हमे दुकान दिखाई दे रहा है साथ ही साथ यहां पर ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे की अमूल की चीजें --

इस द्रश्य में हमें एक मेडिकल इंस्टिट्यूट का ऑफिस देखने को मिल रहा है।

चित्र को देखकर ऐसा लग रह है जैसे की ये कोई लाइब्रेरी हो यहां पर हमे बोहत सारे सेल्फ लागए हुए दिख रहे है।

यहां पे झंडा फहराने के लिए खंभा भी लगा हुआ है यह दृश्य --

इस दृश्य में हमें रास्ता दिखाई दे रहा है जिसपे कई गाड़ियां बाइक और स्कूटी पार्क की हुई नजर आ रहे है।